यह तस्वीर में एक फोटो को देख यह पता चल रहा है की यह तस्वीर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की बैंक की है।

यह तस्वीर को देख और इन बच्चे को खेलते हुए देख मानो मुझे अपनी बचपन कि यादे ताज़ा हो गई।

यह तस्वीर एक चमचमाती हुई सादा रंग की मारुति सुजुकी सिलरिओ नामक गाड़ी की है।